और यहां पे खंडहर सी बनी हुई जमीन दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है और एक नेक बैंड लगा रखा है लाल रंग का।

ठीक है और कुछ माला सी रखी हुई हैं।

दिन का समय दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर पीछे दीवार पर कुछ उर्दू भाषा में लिखा है।

और दिन का समय दिखाई दे रहा है।

जिसपे रेड कलर की बेडशीट बिछी हुई हैं।

फर्श भी पत्थर का है सामने एक बोर्ड भी लगा है ब्ल्यू कलर का।

बाहर यहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी है जैसे की--

दो लड़के दिखाई दे रहे हैं यहां पर --

इस फोटो में वॉटर पार्क दिखाई दे रहा है।

एक अ सड़क दिखाई दे रही है सामने चरखी दादरी का बस स्टैंड --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

एक वेटर खड़ा है पीछे काफी सारे गुब्बारे लगे हुए हैं जोकि--

नीचे लिखा है हेल्थ पैट्स हैप्पी पेट ।